और एक औरत दिखाई दे रही है। उसने माक्स लगा रखा है मुँह पे --

ये गेट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है राजकीय पॉलिटेक्निक --

दुकान के बाहर काउंटर लगा हुआ है और उसके ऊपर छोटे-छोटे डिब्बे रखे हुए हैं। कुछ सामान ऊपर भी टंगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक स्वास्थ्य केंद्र का है और बाहर शीशा लगा हुआ है।

बेड के ऊपर गद्दे बिछाए हुए हैं और दो पिलो रखे हुए हैं।

पेड़ लगे हुए हैं और एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ है।

एक लड़के ने लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है और एक लड़के ने --

कुर्सी पर नीले रंग का एक टॉवेल टंगा हुआ हैं।